हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध हमारे देश से चाइना काफी सारी कलाएं लेकर गए थे।

इसके सामने काफी सारे पेड़-पौधे हैं। यह देखने में काफी बड़ी दिखाई दे रही है।

यह कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है।

लेकिन उस वृद्धि के कारण काफी नुकसान हो रहा है जो कि जानवरों के लिए है।

जिससे हमारी पोस्ट कहीं भी पो सकती है।